कोई दिख नहीं रहा हमे ऐसा लग रहा है कोई पब्लिक प्लेस ही है क्यूंकि इस प्रकार की कुर्सी पब्लिक प्लेस मे--

चारो तरफ से बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

कुछ लड़के नीचे बैठे हुए हैं जगह-जगह दो चार करके ये कहाँ का ग्राउंड है इसके बारे में हम नहीं कह सकते।